यह एक खेत है खेत में बहुत सारा घास लगा हुआ है।

लैपटॉप सी_पी_यू माउस कीबोर्ड प्रिंटर रखा हुआ है।

यह एक दुकान है दुकान के ऊपर चंदन वस्त्रालय लिखा हुआ है।

दुकान पर ब्लैट चल रहा है जो सफेद कलर का है।

यह एक होटल है होटल में बहोत सारा बेड लगाया हुआ है बेड पर कपड़ा लगाया हुआ है।

घर के बगल में बहुत सारा बास लगाया हुआ है बास के ऊपर टप्पर लगाया हुआ है।

यह एक घर है। घर का कलर सफ़ेद कलर का है। घर के बाहर से एक शीशा का गेट लगाया हुआ है।

रोड के किनारे बहुत सारा घास दिखाई दे रहा है और पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक घर है घर में बहुत सारा टेबल कुर्सी रखा हुआ है।

बोल जल रहा है जो सफेद कलर का है घर में पंखा लगाया हुआ है।

घर का कलर वाइट रंग से पेंट किया गया है और बहुत सारा फूल का डिजाइन किया गया है।

सीढ़ी का कलर ब्ल्यू रंग का है घर के बाहर बाइक लगाया हुआ।

यह एक स्कूल है स्कूल का कलर व्हाइट रंग से पेंट किया गया है।

घर का कलर वाइट कलर से पेंट किया गया है घर में एल_सी_डी लगाया हुआ है।